इस दृश्य में हमें पूरा गांव दिखाई दे रहा है।

उसमें गुब्बारे लगे हुए हैं गुब्बारो का रंग पीला और लाल है और गुलाबी।

इसमें पेन रखे हुए हैं कुछ किताबें हैं।

एक लड़का दिखाया गया है जो कि वर्कआउट कर रहा है।

इस दृश्य में एक शॉप दिखाई गई है।

जहां पर एक आदमी अपनी शॉप चला रहा है जिसे कहीं तरह की मिठाइयां रखी हुई है।

जहां पर दो बाइक खड़ी हुई है गैराज के अंदर सामान रखा हुआ है।

गुब्बारे कई तरह के हैं पिंक पीला नीला हरा सारे गुब्बारे इसमें लगे हैं।

एक बहोत अच्छा दृश्य दिखाया गया है हॉस्पिटल का जहां पे एक रिसेप्शन पे एक आदमी खड़ा हुआ है।

बहोत स पूरी खुली जगह हुआ है बहोत सी कंपनियां है ऐ_सी लगा हुआ है यहां पर--